और यह देखने मे काफी रनबिरंगा दिख रहा है।

लोग यहां पूजा करने घूमने आते होंगे।

यहां पे बहुत सारे किताब कॉपी मिलते है।

बहुत सारे गड़िया छोटी बड़ी गड़िया है यहां पेट्रोल डीजल